पर एक लड़के का और यहा पर सेवेंटी परसेंट ऑफ लिखा हुआ है।

गार्डन मे बहुत सारी घास आ रही है पेड़ पौंधे आ रहे है और नीला आसमान है।

ये उसका कबबोर्ड है उसके ऊपर टी पॉट रखा हुआ है और यहा विंडोज लगे है और एक एल_इ_डी रखी हुई है दीवार मे।

यहां पे एक बिल्डिंग बन रही है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है और एक मजदूर खड़ा हुआ है सामने एक कुर्सी राखी हुई है।

ये एक मैकेनिक शॉप है जहाँ पर बाइक खड़ी हुई है और ये बाइक टूटी हुई है।

सेब और बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए है यहाँ बहुत भीड लगी हुई है।

बहुत सारी चिजे मिल रही है बच्चों के स्कर्ट्स लगे हुए है टॉवेल्स है बेडशिट्स है फ्रॉक्स है कुर्तिया है।

गेंदे के फूल है। लाल फुल है हरे और बहुत सारे ग्राहक खड़े यहा पे।

उन्होंने ऑरेंज कलर की जॅकेट पहनी हुई है येल्लो कलर का हेलमेट लगा हुआ है और वो इस पाइप को रिपेयर करा रहे हैं।